इस दृश्य में एक सोफा दिखाई दे रहा है सोफा चार सीटर प्रतीत होता है यहां पर सोफे का रंग नीला है।

नीचे कुछ काले काले रंग के धब्बे दिखाई दे रहे है दूर की तरफ एक दरवाजा भी दिखाई दे रहा है और एक ड्रेसिंग टेबल भी दिखाई दे रहा है।

इधर के तरफ हमें स्टैंड फैन दिखाई दे रहा है और उसके नीचे भी कुछ चार पोस्टर दिखाई दे रहे हैं।

पीछे के तरफ में बहुत सारे कचरा दिखाई दे रहा है और यहां लकड़ी से कुछ बना हुआ दिखाई दे रहा है।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

अ बगल मे चेयर दिखाई दे रही है।

में बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे है सामने की तरफ हमें एक गेट भी दिखाई दे रहा है।

किसी टाइल्स पर रखी हुई है।

सब मिलके सब्जी बेच रहे हैं और नीम के पत्ते ही बेच रहे हैं यहां पे नीम के पत्ते बंडल में किए गए हैं।